लारी के ऊपर येचर वर्स है जिब्स है कार्स है।

इधर शॉप में लाइट्स है एक आदमी जाता है।

रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन के ऊपर चेयर्स टेबुलस है गद्दी है ऊपर गुड्स जाता है।

इधर छोटे छोटे बच्ची और बच्चा खेलता है।

ब्ल्यू कलर स्टैंड हैं व्हाइट कलर टेबुल हैं मैट हैं लाइट्स हैं फैन हैं।

इधर व्हाईट कलर बैग बड़ा-बड़ा है आदमी है एक आदमी लाल कलर शर्ट डाले को पिल कलर की टोपी--

बड़े प्लेस हैं प्लेस के ऊपर क्लोज है।

प्लांट है पेड़ है बोर्ड है एक आदमी दो आदमी नीलू है बाइक है ब्लू कलर बैग है।

इधर भरे भरे अपार्टमेंट्स है अपार्टमेंट के नीचे छोटा अपार्टमेंट्स है अपार्ट्समेंट्स में--

एक आदमी देता है इंडिगो है फ्लाईट नेम --

इधर एक आदमी के हैंड देखता है।

इधर बड़े ग्राउंड है लाइट्स है बसेस है।

इधर त्रिय आदमी है। एक आदमी नीचे के उत्तर केवी काम करता है।

स्टूल है स्टूल के ऊपर पिलो है डब्बा है स्टेप्स है ए_सी डब्बा है।

होटल मैं टेबल्स हैं टेबल के साइड चेयर्स हैं।

ग्राउंड है ग्राउंड में कार है कार के ऊपर कलर फ्लावर से रंग --

स्कूटी हैं बड़े-बड़े पेड़ से छोटे-छोटे पेड़ से--

इधर एक छोटा बडे --

गिफ्ट पैकेट्स है केक है केक पे साइड बैलेंस लाल बैलेंस है अच्छा है देख देख के--

लड़की है लड़का है बड़े आदमी है पंखे करता है सब जने --

जिम के लाल कलर है ब्लैक कलर जिम म--